ईटा दिखाई दे रहा है। यहाँ सीमेंट रेता ईटा सरिया --

नहा के खड़ा है और यहाँ पे बच्चें देरी से पानी बह रहा है पहाड़ों के बीचों-बीच।

दिखाई दे रहा है। मस्जिद है देख सकते हैं। पंखा लगा हुआ है। यहाँ पे घडी लगे हैं।

दो आदमी बैठे हैं उधर लेडीज़ जो उस साइड बैठे हैं काउंटर के।

और ई मैदान में सब खेलते हैं । आस-पास यहाँ अभी कोई नहीं --

बहुत क्यूट दिखाई दे रहा है ई। यह बहुत सुन्दर और अच्छा है। यहाँ पे एक लोग और बैठे हैं।

और यहाँ देख सकते हैं दुकान बहुत सुन्दर और अच्छे हैं बिस्कुट भी रखे हुए हैं। यहाँ पे काफी सारे --